और वहाँ पे जमीन पर हम देख पा रहें कुछ डालियाँ सी रूखी हुई और कुछ पत्तियाँ वगैरा बिखरी हुई नज़र आ रहीं पूरी मट्टी की ज़मीन है और कुछ पेड़ भी है अंदर की तरफ--

और बोत ही जादा एरिया (Area) मे फेली हुई है और बीच बीच मे हमे कुछ बादल देख कर ने को मिल रहे है जो की ऊपर की तरफ उद रहे है तैर रहे है व्हाइट ( कलर ( के और ऊपर खुला आसमा--

पे हमे एक आदमी खड़ा हुआ नज़र आ रहा है जिसने की एक नीले रंग का शर्ट और लोअर सा पहना हुआ है नीचे पुराने से जूत जूते पहने हुए हैं और हम देख पा रे हैं की अ-- उसके साइड में तीन ऑक्सीजन सिलिंडर रखे हुए हैं।

आगे की तरफ बढ़ता हुआ हमे नज़र आ रहा है और पीछे उसके हमें कुछ लेडीज वगैरह भी देखने को मिल रही है और हम देख पा रहे हैं वहाँ पे और भी पेंडल वाले रिक्शे हैं पीछे की तरफ एक बिल्डिंग भी हमें नजर आ रही जिसमें इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है एक बोर्ड सा भी लग--

एक मैडम भी खडी हुई हमें नज़र आ रही हैंजो कि एक लड़की जैसी हैं और उसने सूट सेक पहना हुआ हैं ऑरेंज कलर की चुन्नी पहनी हुई हैं ब्राउन कलर का उसका सूट हैं और हम देख पा रहे हैं छोटे-छोटे यहाँ पे नंगे-पुंगे से बचे हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि वह ज़मीन पर बैठे हैं कुछ बिछा कर--

यहाँ आप देख सकते है की हमे यह नाईट व्यू देखने को मिल रहा है और हम देख प् रहे है नीचे की तरफ टेंट जैसा लगा हुआ है वाइट कलर का पर्दे से लगे हुएहै साइड में।

जो दूसरा आदमी है मोठे पेट वाला जोकि शायद कोई डॉक्टर वागेरा है। वो उसकी टांगों को कुछ चेक उप करता हुआ हमे नजर आ रहा है। और हम ये भी देख पा रहे है की सामने उनके एक विड --

व्हाइट कलर की जलती हुई हमें नज़र आ रही है नीचे एक केबिन वगैरा बने हुए हैं लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में रेड कलर की चेयर लगी हुई है एक लाइन से जहाँ पर आगे की तरफ लोग बै--